और मकान की लंबी लंबी सी डोलिया भी बनी हुई दिखाई दे रही है।

ये किसी दुकान की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे --

जहां सामने की ओर एक बड़ा सा काले कलर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

पास ही मे एक आदमियों की कपड़ो की दुकान बनी हुई नज़र आ रही है।

गार्डन के बीच में एक सिंचाई वाला नल भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ लाल फूल भी बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे है।

ये किसी हॉस्पिटल के बाहर की फोटो दिखाई दे रही है जो कि एक बहुत ही बड़ी बनी हुई बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां बिल हॉस्पिटल के बाहर एक बड़ा सा गार्डन भी बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे पेड़-पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

ये एक गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी क्लास रूम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे बच्चे हैं जो लाल कलर की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं --

यहां पे कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पे एक रिक्शा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है।